लेफ्ट एंड राइट साइड टायर से डेकोरेशन किया गया है जो कि पीला रंग का है।

टो मेटीन का मौसम दिखाया गया है और हल्का सा काला बादल छाया हुआ है।

स्टेज के राइट साइड बहोत से स्पीकर काले रंग के रखे हुए हैं।

इस राइट साइड वाले बिल्डिंग में बहोत सी खिड़कियां भी हैं।

घर के आगे इन इनके पी लेफ्ट साइड येल्लो लाइटिंग्स है और चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली ही हरियाली है।

रास्ते के आगे छोटे से दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

प्लास्टिक के लेफ्ट और राइट साइड बेरीगेट लगा हुआ है जो कि लोहे का है और उसमें वाल्स का सीलिंग्स दिया गया है।

रास्ता बहोत सफा है और लेफ्ट साइड कवियों में पत्थर दिख रहे हैं।

और रेफरी लाल रंग का कुछ पहने हुए खड़ा हुआ है।

उस स्टेज में एक लाल रंग पहनी हुई बूढ़ी खड़ी हुई है।

बिल्डिंग के आगे एक स्कूटी पार्क्ड है।

फोटो दिन की है और खुला आसमान नीला है।

फोटो के आगे दिखाई जा रहे हैं।

पीछे कई तरह के शर्ट और कुर्तियां टंगी हुए हैं।

इसके चारो ओर शीशे भी लगे हुए हैं।

सबसे लेफ्ट साइड शेल्फ में कुकिंग ऑइल्स रखे हुए हैं।

जो वॉल है सामने वो सिल्वर या ग्रे रंग का है।

ये फोटो किसी टेक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की है।

फोटो की दुकान के सामने तीन चार टेबल फैंस रखे हुए हैं।

सामने की ओर एक मोटर है जोकि पानी खींच रहा है।

फोटो के आगे बहोत से घास है और लेफ्ट और राइट से पेड़ पौधे हैं और हरियाली हरियाली है।

फोटो में दिखाया गया दुकान का वॉल का रंग ग्रीन है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाया गया है।